जो की लोहा का बना हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा शोरूम नजर आ रहा है।

उस शोरूम में कुछ लोग नजर आ रहे हैं और उन दोनों ने अलग अलग रंग में कपड़े पहने हुए हैं।

फूल से बना हुआ एक लैंप टाइप का कुछ नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर नज़र आ रहा है।

घर का छत टीना से बना हुआ है और उस घर के पीछे एक बड़ा सा पहाड़ है।

सभी लोग एक छोटे से कारपेट में बैठे हुए हैं।

जो की सीमेंट से बना हुआ है और वाइट कलर का है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत सारा घर नजर आ रहा है।

एक टी_वी ए_सी फैन और कुछ तस्वीर लगाया हुआ है।

और खिड़की के साइड में बहुत सारा फुल नजर आ रहा है।

मुझे इस तस्वीर में रेस्टोरेंट टाइप का कुछ नज़र आ रहा है।

और एक इंसान नजर आ रहा हैं जो कि खड़ा होकर है।

जैसे कि आलू लहसुन और भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में छोटा छोटा रूम बना हुआ नजर आ रहा है।

कुछ स्कूटी व्हाइट कलर में है और कुछ स्कूटी ब्लैक कलर में है।

इसके ऊपर अमरोन लिखा हुआ है।

ये सब लोगों ने अलग अलग रंग में कपड़े पहने हुए हैं।

इन सब के पीछे में एक बड़ा सा मूर्ति है गणेश जी का।

और इधर के साइड के दीवार मे कुछ नोटिस लिख रखा हुआ है।

और ऊपर में बहुत सारा लाइट बल्ब जला हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में बहुत बड़ा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

हम सबके आगे में एक दीवार है।

उस जे_सी_बी के पास में तीन आदमी है।